यह मंदिर है रोड के किनारे है जो की दो बंदा--

यह दुकान है ए दुकान में बहुत सारे बलून भी लगा हुआ है और इस दुकान में टेबल भी है।